चाहे वो मूर्ति हो चाहे किसी चीज का --

ये एक बिल्डिंग दिख रही है।

जो है दाली वगैरह दिख रही हैं।

जिसका नाम है धूत काया--

जहां दो कस्टमर्स दिख रहे हैं--

एक साइज में बुक रखी है।

ऑटोमोबाइल की जिसका नाम है।

जिन- जो काफी एज के हैं--

ये एक ग्राउंड है जहां --

काफी ज्यादा पेड़-पौधे भी हैं हरियाली है।

जहां पे लेडीज कपड़े वगैरह मिल रहा है।

तीन से चार बंदे दिख रहे हैं बैठे हुए।

ये एक क्लासरूम है।

ब्राउन कलर का ब्लू वाइट मिलाकर--

रेड टी-शर्ट में फोटो खींच रहा है लड़का--

और जिसने भी दिखाया है--

और अंदर एक बेड लगा हुआ है।